वो देख काफ़ी अच्छी है।

यह बिग बोलेरो हैजो काफ़ी--

-- जो त्योहारों में लिया जाता है।

के लिए।

पीलर भी बहुत मजबूत है टाएपीन भी दिया हुआ है ।